बीच में एक लड़की ने भारत माता का--

जहां पर बहुत सारे गमले रखे हुए हैं।

नीचे देखिएगा का टेबल और कुर्सी लगे हुए हैं।

यहां की सीढ़ी भी नजर आ रही है नीचे गमले में देखिएगा पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

व यहां पर एक ऊंची सी इमारत दिखाई दे रही है जिसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है महिमा --

इनके सर पे पीले रंग की टोपी भी है और लाल जैकेट भी दिख रहें हैं।

फेस पैक लगा कर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।

उसके पास में एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई दे रहे हैं।

जिसके अंदर काफी सारे सीटें हैं।

और बड़ा सा पुल भी नजर आ रहा है।

यह एक सेना गड्ढे मे खड़ा होकर काम कर रहा है।